नमस्कार दोस्तों
स्प्रैडशीट व्यू एडवान्स्ड पर इस जियोजेब्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
यदि आप जियोजेब्रा के लिए स्प्रैडशीट्स का इस्तेमाल पहली बार कर रहे हैं तो कृपया स्प्रैडशीट व्यू पर बुनियादी ट्यूटोरियल के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट देखें
इस ट्यूटोरियल में हम स्प्रैडशीट व्यू का इस्तेमाल बिंदु के एक्स और य निर्देशांकों को रिकॉर्ड करने स्लाइडर का उपयोग करके समीकरण के साथ ट्रैस करने के लिए संख्या स्वरुप का पता लगाने डेटा का इस्तेमाल करने और समीकरण ग्राफ के बारे में पूर्व सूचना देने के लिए करेंगे
मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू वर्ज़न 1004 एलटीएस और जियोजेब्रा वर्जन 3240 इस्तेमाल कर रहा हूँ
अब जियोजेब्रा विंडो में
स्प्रैडशीट को दर्शाने के लिए व्यू मेन्यू ऑप्शन में जाएँ और स्प्रेडशीट व्यू ऑप्शन को चेक करें
अब यहाँ एक्सवैल्यू नामक एक स्लाइडर बनाते हैं
हम न्यूनतम और अधिकतम डिफॉल्ट वैल्यू को छोडते हैं
और इंक्रीमेंट को 1 में बदलते हैं
एक्सवैल्यू को न्यूनतम वैल्यू की तरफ स्थानांतरित करते हैं
एक बिंदु आ बनाएँ
बिंदु पर दायाँ क्लिक करके और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज चुनकर बिंदु आ के निर्देशांकों को एक्स निर्देशांक के लिए एक्सवैल्यू में और य निर्देशांक के लिए एक्सवैल्यू के तिगुने में बदलें
यहाँ हम लाइन का ढलान वह रखेंगे जो इस बिंदु के द्वारा 3 तक ट्रेस होगी
कीबोर्ड पर टैब दबाएँ साथ ही शो ट्रेस को चुनें
और क्लोज दबाएँ
स्प्रैडशीट व्यू को स्थानांतरित करें जिससे कि हम कॉलम्स आ और ब देख सकें
अब यहाँ पहले टूल में तीसरे ऑप्शन रेकॉर्ड टो स्प्रेडशीट ऑप्शन को चुनें
बिंदु आ चुनें
यदि ड्राइंग पैड से यह प्रदर्शित नहीं होता है तो कृपया इसे अलजेब्रा व्यू से चुनें
और फिर एक्सवैल्यू स्लाइडर को न्यूनतम से अधिकतम स्थानांतरित करें
ध्यान दें कि बिंदु आ का एक्स निर्देशांक स्प्रैडशीट के कॉलम आ में ट्रैस किया है और बिंदु आ के य निर्देशांक को कॉलम ब में ट्रैस किया है
एक बार यह पाठ जब बन जाता है आप विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं कि स्प्रैडशीट व्यू में विजुअल ट्रेस को देखकर या डेटा को देखकर समीकरण का पूर्वानुमान करें
पूर्वानुमान किया गया समीकरण इनपुट बार में फ़ 3 एक्स के रूप में इनपुट हो सकता है
जियोजेब्रा में टाइम्स के लिए हम स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं और एंटर दबाएँ
यदि पूर्वानुमान सही है तो सभी खींचे गये बिंदु लाइन पर होंगे जोकि इनपुट थे या समीकरण जो इनपुट था
संक्षेप में हमने एक एक्सवैल्यू स्लाइडर बनाया
हमने एक्सवैल्यू 3 एक्सवैल्यू निर्देशांकों के साथ एक बिंदु आ बनाया
हमने अलग अलग एक्सवैल्यूज के लिए बिंदु आ के एक्स और य निर्देशांकों को रिकॉर्ड करने के लिए रेकॉर्ड टो स्प्रेडशीट का उपयोग किया
हमने संख्या स्वरूपों का इस्तेमाल करके एक इनपुट समीकरण का पूर्वानुमान किया
अब पाठ के अगले भाग में
पहले बिंदु आ से ट्रेस को हटा देते हैं
अबy प्रतिच्छेद पैरामीटर जोड़ते हैं
एक और स्लाइडर बनाएँ और उसको ब नाम दें न्यूनतम और अधिकतम वैल्यूस को छोड़कर और इंक्रीमेंट को 1 में बदलकर और एप्ली क्लिक करें
आगे हम ब की वैल्यू स्थानांतरित करेंगे मूव टूल का इस्तेमाल करें और ब की वैल्यू को 2 तक स्थानांतरित करें एक्सवैल्यू न्यूनतम वैल्यू की में बदलें
फिर बिंदु आ पर दायाँ क्लिक करें
ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज चुनें य निर्देशांक को 3 एक्सवैल्यू ब में बदलें कीबोर्ड पर टैब दबाएँ
शो ट्रेस ओन को चेक करें
फिर स्प्रैडशीट व्यू को स्थानांतरित करें जिससे कि आप कॉलम सी और डी देख सकें
अपना कर्सर सेल सी1 पर रखें फिर से रेकॉर्ड टो स्प्रेडशीट ऑप्शन इस्तेमाल करें
पहले बिंदु आ चुनें यह वह जिसे आप ट्रेस करना चाहते हैं और फिर एक्सवैल्यू को न्यूनतम से अधिकतम स्थानांतरित करें
आप देख सकते हैं कि बिंदु आ का एक्स निर्देशांक स्प्रैडशीट के कॉलम सी में और बिंदु आ का य निर्देशांक कॉलम डी में ट्रेस हुआ है
इस डेटा से आप विद्यार्थियों को स्वरुप समझने और समीकरण का पूर्वानुमान करने के लिए पूछ सकते हैं
इस प्रक्रिया को ब की अलग अलग वैल्यूस के लिए दोहराएँ
पूर्वानुमानित समीकरण इनपुट बार में इनपुट हो सकता है
चूँकि हमारे पास फ़ पहले से ही है मैं g 3 एक्स ब इस्तेमाल करूँगा ब की वैल्यू यहाँ 2 है
और enter दबाएँ
अब सार के लिए हमने ब नामक एक और स्लाइडर बनाया बिंदु आ के निर्देशांक को एक्सवैल्यू और य निर्देशांक के लिए 3 एक्सवैल्यू ब में बदला
अलग अलग एक्सवैल्यू और ब वैल्यूस के लिए बिंदु आ के एक्स और य निर्देशांकों को रिकॉर्ड करने के लिए रेकॉर्ड टो स्प्रेडशीट ऑप्शन का इस्तेमाल करें
हमने एक इनपुट समीकरण फ़ 3 एक्स ब को पूर्वानुमानित किया यहाँ हमने केवल समीकरण को जी कहा है
अब नियत कार्य पर चलते हैं
नियत कार्य में एक द्विघाती समीकरण को स्लाइडर्स एक्सवैल्यू और आ को बनाकर ट्रेस करें
एक्स निर्देशांक के लिए एक्सवैल्यू और य निर्देशांक के लिए xValue2 निर्देशांकों के साथ एक बिंदु आ बनाएँ
अलग अलग एक्सवैल्यू और आ वैल्यूस के लिए बिंदु आ के एक्स और य निर्देशांकों को रिकॉर्ड करने के लिए रेकॉर्ड टो स्प्रेडशीट ऑप्शन का इस्तेमाल करें
और समीकरण f आ x2 को पूर्वानुमान और इनपुट करें
नियत कार्य के साथ जारी रहने के लिए हम एक द्विघाती समीकरण आ x2 बीएक्स 3 को ट्रेस करेंगे
हम एक और स्लाइडर ब बनाते हैं
य निर्देशांक के लिए निर्देशांकों एक्सवैल्यू आ xValue2 ब एक्सवैल्यू 3 के साथ एक बिंदु आ बनाएँ
अलग अलग आ और ब वैल्यू के जोड़ों के लिए बिंदु आ के एक्स और य निर्देशांकों को रिकॉर्ड करने के लिए रेकॉर्ड टो स्प्रेडशीट ऑप्शन का इस्तेमाल करें
समीकरण फ़ आ x2 ब एक्स 3 का पूर्वानुमान करें और इनपुट करें
मैंने यह जियोजेब्रा फाइल पहले से ही बना ली है
इस उदाहरण में ट्रेस ओन चुनें यह पहले से ही चुनित है
हम एक्स वैल्यू को न्यूनतम में बदलेंगे और रेकॉर्ड टो स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करेंगे बिंदु आ चुनेंगे और एक्सवैल्यू स्लाइडर को स्थानांतरित करेंगे

हम पूर्वानुमानित समीकरण फ़ 2 x2 2 एक्स 3 को इनपुट कर सकते हैं जिसे हमने नियतांक वैल्यू को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया है
इस परवलय के किनारे इन ट्रेसेस पर ध्यान दें
इस वेबसाइट पर उपलब्ध विडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता हैयदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं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
अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ई मेल एड्रेस पर सम्पर्क करें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
अधिक जानकारी इस वेबसाइट पर उबलब्ध है
आई आई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ
जियोजेब्रा में अधिक सीखने का आनंद लें